दो आदमी दो ए_सी भी लग रही है।

और इसके अंदर एक काउंटर रखा हुआ है उसमें कुछ फिटिंग से भी बनी हुई है।

और इसके आसपास कुछ आदमी और खड़े हैं।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

ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी के हाथ में एक लोहे की लड़ी है।

पहाड़ों में कुछ पेड़ भी लग रहे है।

और इसके पास में एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

और सामने कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है।